और नीचे जो है चार अ गद्दा जो है फ़ोल्ड करके रखा गया है। उनपे भी बनी हुई हैं और ये काफी अच्छी लग रही है। इसमें काफी खूबसूरती से डिज़ाइन वगेरा कि --

ये फार्म हाउस नजर आ रहें हैं और ये फार्म हाउस का जो बनावट हुई है वो पूरा टीन से बनी हुई है। यहाँ पे बड़ी से फार्म हाउस है। जिसका कलर पर्पल की हुई है।

नीचे का जो फर्श है। उसमें काफी कुछ प्लास्टर वगैरह हुई है। ये जो बड़ी एक जगह पे है और ये पूरा खाली नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई इंसान नहीं नजर --

बिस्किट नजर आ रही है और ये एक बड़ी-सी जो ब्लैक कलर की जगह उसके साइड साइड में ओरिओ के बिस्किट चिपकाया गया है। ऊपर किटकैट नजर आ रहा है और यहाँ पर जो यह गोल-गोल जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स वगेरा रखे हुए हैं।